यह एक बहुत बड़ा पार्क है और बहुत सारे घर भी हैं घर का रंग व्हाइट कलर से पेंट किया गया है।

यह एक बहुत बड़ा घर है घर के ऊपर एक बोर्ड लगाया हुआ है बोर्ड पर वाइट कलर से न्यू ताज लिखा हुआ है एक आदमीन का चित्र बनाया गया है।

यहां एक सीढ़ी चहग्ने वाला ऊपर बनाया गया है।

यह एक ठेला है ठेला में बहुत सारे फल है।

फील्ड के किनारे रोड पर लाइट जल रहा है।

आसमान में नीला कलर के बादल दिखाई दे रहे हैं।

रोड पर टाइल्स बिछाया हुआ है।

मंडप में बहुत सारे फूल से सजाए गए हैं।

घर में टेबल कुर्सी रखा हुआ है।